खिड़कियाँ भी नजर आ रही हैं।

घर के आगे बहोत सारे लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक विद्यालय का दृश्य है।

इस दुकान में बहोत सारे पुस्तकें रखी हुई नजर आ रही हैं।

एक लड़का खड़ा ही खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक पैलेस की बाहर की तस्वीर नजर आ रही है।

यहाँ एक स्टार पैलेस का होर्डिंग लगा हुआ है।

यहाँ बहोत सारी लेडीजो के कपड़े बिक रहे हैं।

लगी हुई है। नीचे बहोत सारे सितारें रख लगी हुई है।